--बरा-सा पत्थर है उस पर चार सर्किल बना हुए हैजो ब्लू येलो रेड और ग्रेन कलर के हैं।

ये एक बड़े से लंबे से लोहे का पुल है जो एंगल पे बना हुआ है।

ये एक शादी का पिक है जहां पर बहुत बड़ा सा--

कूड़ा पड़ा हुआ है यहां पर साइड में एक बाल्टी रखी है और यहाँ की फर्श मिट्टी की है।

यहां पर साइड में एक चेयर पे कपड़ा पड़ा हुआ है और वहाँ पे पेन रखे है और सामने कलरफूल टेप रखे है।

इस बिल्डिंग के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है और वहाँ पर सीमेंट की बनी हुई ईटे रखी--

जिसमें कि स्लाइडिंग है और यहाँ पर तीन लड़कियां बैठ कर आपस में बात कर रही है और कुछ परेंट्स अपने बच्चों को झूला झुला रहे हैं।

ये एक रैक है जिसमे पॉलिथीन के बंडल रखे हुए हैं । यहाँ पर वाइट पॉलिथीन के बंडल हैं।